एक मकान है उसके सामने गैलरी बनी हुई है सामने लोहे का चैनल लगा है जो काले रंग में है।

दोनों किनारो के दीवार पे भी डिजाइन बनी हुई है आकृ--

पहियों से बनी हुई एक छोटी सी ट्राली है उसके ऊपर पत्थर रखे दो लोग लिए जा रहे पकड़े--

एक बड़ा मैदान है इसमें क्रिकेट हो रहा है और काफी लोग खड़े हैं फील्डिंग कर रहे हैं।

सामने की तरफ से एक आदमी खड़ा है जोकी भूरे रंग का शर्ट और ब्लैक रं कलर का लोवर पहन रखा है और सिर पर कैप लगाए --

के दोनों तरफ हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं और सामने की तरफ एक मकान बना है।

सामने एक दुकान वाला बैठा है जिसने अपने हाथ में चार अंगुठियाँ पहन रखी हैं और चश्मा लगा--

उसके पास में एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है और बीच में एक बड़ी मशीन रखी हुई है।

दाहिनी तरफ गणेश भगवान जी बने हुए हैं और बाएं तरफ कार्तिके जी बने हैं।

ईंटे पत्थरों से दीवार बनी है काले और लाल रंग की जिसके बीच में मिट्टी भरी हुई है उसी में बोड लगा है और--

सामने की तरफ काफी सारे स्टिकर और कवर लगे हुए हैं।

व काफी सारी फाइलें रखी हैं। ऊपर की छत सफेद रंग में है और काफी सारे पंखे और लाइट लगी हैं।

इधर की तरफ पीले और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं और काफी लोग अंदर टहल रहे।

के तरफ एक पपीता का बड़ा पेड़ लगा हुआ है और एक छोटा पेड़ लगा है।

इनके पास में विंडो बंद लगी हुई है जिसपे पर्दा पड़ा है।

के एक साइड में दीवार है और दीवार के पास में लोहे की जाली लगी है।

सामने की तरफ गेट के पास में काफी सारी दवाइयां रखी हुई--

सारे बच्चों ने सफेद रंग की ड्रेस पेहन रखी और अपने कमर पे नीले व पीले व काले रंग के बेल्ट बांध रखे हैं।